यहाँ पर बहुत सारी मूर्तिया रखी गई है इनकी बनावट सैनिक जैसी कि गई है इसको ब्लैक कलर के किसी धातु से बनाया गया है यहाँ जो रखी हुई है जमीन पर--

यह एक रेस्टोरेंट ज-ज जैसा लग रहा है शायद रेस्टोरेंट ही है इसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाये गए है इसकी सजावट बहुत अच्छे से की गई है इसकी--

यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कार्यपालन अभियंता यहां पर गेट भी दिख रहा है शायद एक गेट दिख रहा है पीछे कूत कुछ आदमी खड़े हुए हैं एक ट्रेक्टर दिख रहा है।

यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई है कुछ मूर्तिया का रंग काला है कुछ मूर्तियों का रंग गोल्ड है और यह मंदिर शायद संगमरमर से किया गया हैं।

यहाँ पर शायद एक पार्क है पार्क जैसा ही लग रहा है क्योंकि एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है पेड़ भी लगे हुए है कुछ घास भी दिख रही है।

यह एक मंदिर हैं जिसको पत्थर से बनाया गया हैं अंदर क्या हैं कुछ दिख नहीं रहा हैं सिर्फ काला काला दिख रहा हैं ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया हैं उसकी कुछ गी गोल टाइप का आकार दिया गया हैं।